मुझे यहां पर बहुत सारे पुरुष दिखाई दे रहे हैं।

पुरुष व महिला के हाथ में तीर दिखाई दे रहे हैं।

हॉल में बहुत सारा सामान दिखाई दे रहा है।

सामने की ओर एक बड़ा सा बोर्ड दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां पर एक बड़ी सी होटल दिखाई दे रही है।

मुझे यहां पर पानी का बेहता झरना दिखाई दे रहा हैं।

मुझे यहाँ पर कई सारे पुरुष दिखाई दे रहें हैं पुरुषों ने शर्ट पेहना हुवा हैं।

ऊपर की ओर एक बड़ा सा बोर्ड दिखाई दे रहा है।